यहां एक रास्ता दिखाई दे रहा है और आजू बाजू में--

यहां एक पे इमेज चाय सुट्टा बार लिखा --

यहां पर बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।